कमरा म्म ऊपर में ब्लू रंग से रंगा गया है। बीच में टाइल्स लगे हुए हैं जो मिट्टी कलर के हैं नीचे सफेद रंग के है।

और ड्रेसिंग टेबल है। टेबल में ऊपर में लाइट लगी है।

वो गुबंद जैसा कुछ है उसी पर पैर रखा हुआ है। यह आदमी टीशर्ट और हाफ पैंट और जूता पहन रखा है।

यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

वहाँ एक दिल पर बैठा हुआ मोर का पंख --

कोलिंग का डब्बा भी है सामने में एक आदमी बैठा हुआ है।

सा यहां पर एक चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे के पास सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।

यहाँ पर रोड पर एक ऑटो वाला जा रहा है।